ये पोकोनेत लाइब्रेरी है। ये बाहर बहुत पेड़-पौधे लगे हुए है फुलवारी है ग्रेल है मकान बहोत अच्छे डिजाइन बना का हुआ है। बड़े-बड़े पेड़-पौधे है। ये गेट है। बैठने के लिए कुर्सी है आसमान है छोटे-छोटे पौधे है। हरी-हरी घास है।